ये एक क्रोकरी की दुकान दिखाई दे रही है जिसमें प्लास्टिक का ही टोटल समान नजर आ रहा है जैसे बाल्टी जग स्टूल --

एक मुस्लिम औरत काले कलर के भुड़के में एक बच्चा को लेकर खड़ी है।

और एक मैं दवा अच्छे से सजा कर रखे गए है एक सीढ़ी भी है।

यह एक मंडी है जहां पे बहोत सारी मछली बिक रही हैं मछली छोटी हैं बड़ी हैं।